एह यह डी_जे उमेश डी _जे साउंड ।

अतिथिओं को इनाम दे रही हे ।

रखे हैं और एक पानी की टंकी भी भरी हुई है।

जैन धर्म की प्रतिमायें स्थित है जिसमे श्री --

स्टोर भी शामिल है जिसमे आपको यहाँ पर पूरा किराना और जर्नल स्टोर का सामान मिल जायेगा।

कर्मचारी आये है पुलिस के साथ जो ऐ. टी. एम्. मशीन में पैसे डालंगे--

लाल कलर की और एक काले कलर की है वहाँ पर से दो आदमी--

क्रिशचन लोग आकर प्रार्थना करते --

यह एक नदी है जिसमें एक नाव --

और पीछे एक महिला भी आ रही है और उसके बैसो भैसो के पीछे एक रोड पर साइकिल --